इस गार्डन में ऐसा लग रहा है कि शादी होने वाली है।

तस्वीर खेची गई है। उस तस्वीर में कुछ--

पास मे एक ऑरेंज कलर के दीवाल है।

और बाहर तीन से चार कुत्ते भीं बैठे हैं।

जिसमें कई सारे फ्रूटस रखे हुए है।

जैसे की संतरा चीकू एप्पल बनाना एक--

पास में एक सोफा भी रखा हुआ है और कई सारे--

और ब्लू कलर के बैग भी पड़े हैं और एक ए_सी भी है।

है कि एक गार्डन की तस्वीर खींची गई है।

बुक्स की दुकानों का चित्र है इसे देखकर ऐसा लग रहा है।

तस्वीर खींची गई है वो भी एक छत की।

सफेद रंग की टी शर्ट पहनी है और ब्लू कलर की पैंट ।